यह एक योगा शिविर है जिसमें एक लड़की बहुत सारे लड़के और लड़कियों को योग सिखा रही हैं।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

नीचे का फर्श से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

बाहर उसके टविल्स लिखा हुआ है।

दो लड़के नजर आ रहे है और किसी एक दूसरा का जूता--

एक आदमी अपना उंगली आगे की ओर किये हुआ है।

यहां एक नौका है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

एक ब्लू कलर की पोस्टर नजर आ रही है जिसमें सिल्वर लिखा हुआ है।

जबकि इसके दीवार पीले रंग से रंगी हुई है।

छे एक खिड़की भी है और खिड़की खुली हुई है।

फेस वाश भी है ऊपर शैंपू भी रखी हुई है और पाउडर भी है।

इस घर के ठीक सामने एक गली भी बनाई गई है।

इधर एक आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी पानी पी रहा है ऊपर बहोत सारी लाइटें लगी है।

सामने एक किराने की दुकान है जिसके ऊपर श्री श्याम भंडार लिखा हुआ है।

उसके ठीक सामने छोटे छोटे पेड़ पौधे नजर आ रही है।

यहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी खड़ी हुई है।

ऊपर दो सफेद फैन भी हैं।

यह एक कैंटीन है जिसमें कुछ छात्र खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इसके चारों ओर कांच से बनाया गया है।

सामने दो कुर्सियां नजर आ रही है जिसका रंग ब्लैक है।

उसके ठीक सामने एक डेस्क है जिसका रंग सफेद है डेस्क के ऊपर कुछ दिया जलाया गया है।